यहाँ पे मंदिर है। यहां पेड़ पौधे हैं। नदी है। है। मंदिर है। गाड़ी है। आदमी है। खंबे हैं। जीने है।

रोड है और क्या लाइटे हैं और सीसे हैं आसमान है।